यह एक सहज सवारी है इसके आगे में एक लाइट लगे हुए हैं।

यह जय माता दी मंदिर है और यहाँ पे मंदिर को बहुत अच्छी तरह से सजाये गये हुए हैं मंदिर के ऊपर में कुछ झंडे भी लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं।

रिक्टी वायर भी है ऊपर से और बहुत ही सुन्दर मंदिर --